इस चित्र में एक होटल दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये दो पंडित भी दिखाई दे रहा है।

और जमीन में कारपेट बिछा हुआ भी नजर आ रहा है।

और दीवाल का कलर पूरा ब्लू में नजर आ रहा है।

और यहां पर ही बहुत सारा कुर्सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

और यहां पर ही एक बड़ा चट्टान में एक पुरुष बैठ के फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर ये बहुत सारा डॉक्टर का सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ही एक लाल कलर का गैस टांगा हुआ भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ही बहुत सारा बत्ती जलता हुआ भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक पुस्तक का दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही रैक सब में बहुत सारा पुस्तक रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही एक पुरुष कुरान पढ़ते हुए दिखाई दे रहा--

इस चित्र में एक कार का दुकान दिखाई दे रहा है ।

और यहां पर ये तीन पुरुष खड़ा होके कार को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक सुजुकी का शोरूम दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारा बालू अ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक साइकल भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ऑफिस में एक टी_वी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही एक सी_सी_टी_वी भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर ही बहोत सारा काला कलर का कुर्सी लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पर ही बहुत सारा गिट्टी सब भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक बच्चा का झूला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ही वजूखाना भी नजर आ रहा हैं।

यहां पर एक तार जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है।